इस इमेज में काफी सारे स्तंभ लगे हुए हैं नीले कलर का बोर्ड है बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं लगता है मंदिर की इमेज है सामने एक मूर्ति भी रखी हुई है एक लोग एक जीने बने हुए हैं।